ये एक रूम का फोटो है जिसपे पिंक पेंट लगा है एक दरवाजा भी है पीछे जिसमें दो विंडो है।

सामने एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है तीन माले की एक लड़का दिख रहा है जिसने बैग पहना है रेड कलर का।